सामने यह लाल रंग के मालगाड़ी के डब्बे दिख रहे हैं।

एक महिला उनका पेड़ पौधाओं को पानी दे रही है।

जिसमें एक सोफा डला हुआ है और साथ में कुर्सी भी डली हुई है।

यहां पर सभी प्रकार की किराने की वस्तुएं मिल सकती हैं।

धरे हुए हैं जो पानी से भरे हुए हैं।

यहां पर एक सामने पीले रंग से पोती हुई दीवाल दिख रही है।

यह एक लाइब्रेरी अथवा किताबों की दुकान दिख रही है।

और उसके बगल में बोतल टांगने के लिए स्टैंड भी लगा हुआ है।

यहां सामने किसी रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन हो रहा है।

उसके छत पर एक क्रॉस का चिन्ह देख रहा है।